यह एक सिनेमा घर की तस्वीर है।

इस तस्वीर में सूरज डूबते हुए दिख रहा है।

यह एक पहाड़ है और इसके अगल-बगल पेड़ है।

यह एक शादी समारोह की तस्वीर है।